यह कोई समुद्र के किरान किनारे की तस्वीर है जिसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा--

तीन खंडों में और एक आदमी भी उसके समुद्र के बगल में रोड पे एक आदमी चलते हुए दिख रहा है दो औरतें पैदल जाते हुए दिख रही हैं।

और उसके बगल में वो बगल में ये दो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और समुद्र का पानी गंदा दिख रहा है।

बगल में एक रेड टेंपू खड़ा हुआ है और रोड क्रॉसिंग के लिए उन्होंने बैरियर लगा रखे हैं।

टेंपू में कुछ मैटेरियल लदा हुआ है और लोगों ने पीले टोपी पहन--

यह एक चाट अड्डा नाम का रेस्टोरेंट है यहां पर चाट और पानी के बताशे रखे हुए--

शीशे लगे हुए है जिनसे अ जो पारदर्शी है जिसमें आर-पार दिख रहा है और यह सेकंड फ्लोर पे है। नीचे इसका एंट्री पॉइंट है।

और उसके पीछे कुछ खिड़की लगी है बगल में एक जनरेटर रखा हुआ--

यह लखनऊ में स्थित एक तजु खाना है और पीछे उसके बड़ी मस्जिद दिख रही हुई है।

एक आदमी बाइक लेकर खड़ा हुआ है और लाइटों की अच्छी प्रदर्शनी लगी हुई है।

लोग अपना सामान खरीद रहे हैं और सामने जाते हुए लोग दो लोग दिख रहे हैं जिनका चेहरा ब्लर --

ये किसी गार्डन का चित्र है जिसमें एक बढ़िया सा लाल गुलाब पिंक गुलाब खिला हुआ है सा--

दो मैन गेट हैं और अंदर भी हरियाली दिख रही है।

ये किसी मेट्रो का टिकट काउंटर दिखा दिख रहा है बेसिकली जिस पे एक लोग दो लोग टिकट खरीद रहे हैं और रोक वाइस पट्टी लगी हुई है।

अ चार पायदान पे चढ़ के बनी हुई है और मूर्ति के ऊपर से ढकने के लिए बना हुआ है काफी हरियाली दिख रही है।

यह किसी जिम की तस्वीर है जिसमें एक लड़का अ होल्डर लेके खड़ा हुआ जो अपनी बॉडी बिल्डिंग कर --

पीला केक रखा हुआ है जिस पे एक गुलाबी और बैंगनी कलर का नीला कलर का फूल लगा हुआ है।

पीछे लोग आते जाते दिख रहे हैं और सामने बालाजी स्वीट्स का बोर्ड दिख रहा है।

यह तस्वीर किसी धार्मिक स्थल या गुरुद्वारे की हो सकती है जहां पे इतनी शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं दिख रही है।

टीचर प्रेजेंटेशन दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इनरोल्ड एंड क्वालिफाइड ।

पानी की बोतले रखी हुई हैं और एक गमले में छोटा सा पेड़ रखा प्रोजेक्टर रखा हुआ है।

यह सिख समुदाय का बहुत ही धार्मिक स्थल है यहां पर लोग दर्शन करने आते हैं यहां पे गुरबाणी कर--

यह किसी मॉल की तस्वीर है जिसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं और--

और भी चीजे हैं जिसमें रैक वाइज हर आइटम लगा हुआ है जीस--